और पतंजलिक आयुर्वेदा का बाहर एक बैनर भी नजर आ रहा--

ये एक साइकल स्टैंड है। जहां पर बहोत सारी साइकलों को पार्क किया गया है।

हम देख पा रहे हैं गार्डन बना हुआ है गार्डन में पेड़ पौधे लगे हैं।